और उसकी बराबर में एक कैलेंडर भी लगा हुआ है।

और बराबर साइड में एक सूर्य प्लेट भी है और मंदिर के ऊपर एक पानी का टैंक भी रखा है।

और पिछली साइड बहुत ही अच्छे अच्छे पेड़ भी खड़े हैं जिनकी छांव भी है और इस तस्वीर पर एक बच्चा बैठा है।

और बराबर वाले बेड के पास एक गद्दा भी पड़ा हुआ है और नीचे फर्श बिछा हुआ है।

और उनके पिछले साइड कुछ मकान भी बना रहे हैं सामने ही एक बल्ब भी लगा है।

और एक औरत एक आदमी सामे खड़ा हुआ है जिसकी बराबर में एक मुरत और लाइट भी लगी हुई है।

और रेडीमेड सलटे भी लगी हुई हैं और बोहोत सारा कपड़ा लगा हुआ हैं।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

जिसके ऊपर लिखा हुआ है छोले भटूरे और बराबर साइड में एक ऑटो भी खड़ी है और कुछ आदमी चलते फिरते नजर आ रहे हैं।

जैसे कि परेस कुकर टंकी और तीन डस्टबिन भी रखे हुए है।

फिटिंग के अंदर कुछ सामान रखा हुआ है जैसे कि तेल सेंड और एक सोफा पड़ा हुआ है।